और जो चादर है वो रेड कलर का है इसमें एक और पड़ा हुआ है पीछे आप देख सकते है की दो तस्वीर लगे हुए है ये जो है की बेडरूम का जो है फोटो है।

और इसमें देख सकते है कि आप इसमें एक बिल्डिंग है । बिल्डिंग के आप ऊपर देख सकते होकुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे आप एक पेड़ देख सकते हो। पेड़ जो है गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है।

काफ़ी इसमें जो है पैकेट की दुकान पूरी दिख रही है। इसमें आप देख सकते हो कुछ हरा टाइप का भी दिख रहा है और नीचे आपको इसमें कई मसालों के भी इसमें पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें देख सकते हो लकड़ी की जो नाव है ये जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें जितने भी आपको देख सकते हो कि हे आपको पक्षी हैं वो उड़ते हुई दिखाई दे रहे हैं।